ये एक बोर्ड लगा हुआ है ताज होटल एंड रेस्टोरेंट ए_सी भी है नॉन ए_सी ये एक संकेत लगाया हुआ हैं।

जिसके ऊपर सड़क के ऊपर गुजरने वाली गाड़ियों से टोल लिया जाता है।

जिसका नाम गवर्नमेंट इंजीनियर कॉलेज है जिसमे आज एनुअल डे फंक्शन --